यह एक मंदिल है। इस मंदिल में तीन मूर्ति है जो बहुत अच्छे दिखते है। मंदिल के बाहर काफी सजाया गया है। यह बहुत अच्छा लगता है। ये मंदिर के प्रांगण बहुत बड़ी --

यह एक कारखाना है इस कारखाने मे बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं कुछ आदमी कोई मशीन को चला रहे हैं और कोई सामान मशीन मे डाल रहे हैं यह कारखाना बहुत ही बड़ा --

यह कोई मार्केट लगता है। यहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। बहुत मोटरसाइकिल खड़े हैं। कुछ आदमी बाहर में खड़े दिखाई देते है। मोटरसाइकिल पर हेलमेट रखा हुआ है।

यह एक डेम है यहाँ बहुत सारा पानी रहता है इस डेम के अगल-बगल एक दो चार पहाड़ी भी है जो काफी हरे-भरे दिखते है यह डेम से बहुत फसल उबजते है।